ये देखिये यहाँ पे आप देख सकते है ये की --सर ये हाइवै है इस हाइवै पे आप देख सकते है ए कार वग़ैरा हैं ये देखिए काफी लंबा हाइवै है ।

ये देखिये यहाँ पे पेड़ वगेरा लगे हुए है ये जो ग्राउंड है जो की काफी बड़ा ग्राऊंड हैइस विद्यालय--